यहां पर मंदिर दिखाई दे रहा है।

टाइल्स की दुकान पे ग्लास लगा हुआ है।

आदमी का बाल कटा हुआ दिखाई दे रहा है।

यहां पर पे पेन दिखाई दे रहा है।

बहुत सारे चार्ट दिखाई दे रहा है।

ये आसमान दिखाई दे रहा है।

यहां पर एक बड़ा सा गेट लगा हुआ दिखाई दे रहा है।

स्कूल के बिल्डिंग दिखाई दे रहा है।

एवं सामने एक सुखा पेड़ भी है। पीछे बहुत सारे पेड़ पौधे हैं।